ये पता नहीं चल रहा है क्या है लेकिन लगता है कि ये --

ये मछली का फोटो है जो प्लेट में है और --

कुछ मछुआरों के द्वारा इसे बेचा जा रहा है।

लोग इसपे खरीदने के लिए खड़ा हैं।

पोधा लगा हुआ है। आगे में खाली है।

बगल में कीचड़ वगेरा भी है।

ये फोटो भी बहुत पुराना स्मारक का है।